ऐसे स्थानों पर बोहत से मुस्लिम परिवार के लोग जाते है एवं नमाज़ अदा करते हैइस तरह के मस्जिद हमारे घर के आस-पास भी देखने को मिल जाते है।

तस्वीर मे हमे बहुत ही बड़ा मेदान देखने पा रहै है जो की बहुत से हरे-भरे घासो से ढका हुआ है।

तस्वीर में हम एक सफेद रंग का मकान देखने पा रहे हैं इस मकान के ऊपर गुम्बद के समान बना हुआ है।

यहा पर बहुत से व्यक्ति एकत्रित होकर वार्तालाप कर रहै है एवं इस तरह के कारखाने हमारे घर के पास मे भी देखने को मिलते है।

ऐवम यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा मे व्यक्ति मोजूद है। यहाँ पर सभी लोग पर्यटन के लिए आए हुऐ है।

यहा पर एक बहुत ही लंबा रास्ता बना हुआ है एवं उसके दोनों किनारे बहुत ही बड़े-बड़े मेदान बने हुए है।